नीचे में बहुत जरा स्कूटी भी दिखाई दे रहा है बाइक भी दिखाई दे रहा है और कुछ प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

पर्दा भी दिखाई दे रहा है और कुछ ए_सी जैसा भी दिखाई दे रहा है।

तीन गाड़ी भी है और एक जो रेड कलर में है और एक जो व्हाइट में है और एक जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है।

कुछ बम्बू भी दिखाई दे रहा है और सीढ़ी जैसा भी दिखाई दे रहा है।

रस्सी भी दिखाई दे रही और एक बनाने वाला घर भी है।

कुछ सामान पैक करके भी रखा हुआ है और उसे भी कुछ अ सोलर टेप से बांध के रखा हुआ है।

उसका पीछे में जो कुछ सामान दिखाई दे रहा है और एक चेयर जैसा भी है।

वो भी अलग अलग कलर का है और एक ब्लू का है और एक ऑरेंज कलर का है।

इसको सामने में कुछ फल फ्लावर पॉट भी है।

ये जो बाइकिंग ब्रदर्स लिखा हुआ है और कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

जीना भी दिखाई दे रहा है और पिलर जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

निकल रहा है और आसमान में जो अ बादन भी दिखाई दे रहा है।

एक स्विच बॉक्स भी है कुछ तार भी आके है और उसमें कुछ चेयर दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

तब भी रखा हुआ है और डॉट पेन भी दिखाई दे रहा है।

कुछ पाइप भी दिखाई दे रहा है और एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है और और कुछ कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

एक फैन भी दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा लाइट बल्ब भी है।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

समुंदर का कलर जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है और समुंदर का अंदर में भी कुछ दिखाई दे रहा है।

चेयर में जो एक लड़का भी बैठा हुआ है और टेबन का ऊपर में जो कुछ ढका हुआ है।

पाइप भी दिखाई दे रहा है और उसका सामने में जो कुछ मशीन है और वो भी व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

में कुछ पोस्ट भी दिखाई दे रहा है और घर का कलर जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और आसमान में जो बादल दिखाई दे रहा है।

कुछ प्लास्टिक बैग भी दिखाई दे रहा है और बोस्ता बैग भी दिखाई दे रहा है।

घर में जो बहोत जादा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।